यहाँ पर लाइन के लाइन बैठे है।

और मोबाइल से फोटो भी खीच--

जो अंदर में एक ऑफिस है ऑफिस में चेयर दिख रहा है।

यहाँ एक समुन्द्र का साइट का हिस्सा है।

पौधे है छोटे-छोटे--